इसके साइड में और पीछे भी ओर पत्थर टाइप का दिखाई दे रहा है।

नीला आसमान दिखाई दे रहा हैऔर दूर से काफी सारे घर बने हुए है।

पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे से पौधे और एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है बीचो-बीच और उसके आगे की ओर --

जिसने सूट पहना हुआ है व्हाइट कलर का दुपट्टा डाला हुआ है और मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

यहां पर कुछ सीढ़ियां बनी हुई है जिसमें कुछ बीच में बाउंड्री टाइप की और कुछ छोटी सीढ़ियां बनी हुई है उसके साइड में बाउंड्री टाइप की बनाई गई है उसके आगे --

पेड़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे सामने की ओर एक सड़क बनी हुई है और नीला आसमान दिखाई दे रखा है।

यहाँ पर ऊपर की ओर पुल बना हुआ है जिसमें नीचे-नीचे साइड - साइड में दो-दो पिल्लर्स टाइप के बने हुए है जिस पर पुल टिका हुआ है।

यहां पर एक बड़ा-सा प्लेग्राउंड है जहां पर कुछ लोग मैदान के अंदर खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

और एक और बंदा खड़ा हुआ है जो कि ब्लैक कलर की टी-शर्ट में है वो मिरर की ओर देख रहा --

और उसी के जस्ट जॉइंट पर एक पेड़ लगा हुआ है जो की ग्रीनीश हैं और सामने की और उसमें जाल लगी हुई हैं।

और एक दूरी से टंकी दिखाई दे रही पानी की और आसमान दिखाई दे रहा है साइड में चांद दिखाई --

और उसके साइड में काफी सारी चेयर्स रखी हुई है और एक शोकेस बना हुआ है सामने की ओर जिसमें पूरा लोहे का बना हुआ है और अलग-अलग बुक्स छुपी हुई है।

ऊपर की ओर व्हाइट लाइट लगी हुई है और साइड में भी इसमें बुक जमी हुई है।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जो की ब्राउंस कलर की दिख रही है नीचे की ओर इसमें टाइल्स लगी हुई है वो भी ब्राउन कलर की है।

यहां पर एक चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड है जहां पर राइट साइड में बाउंड्री बनी हुई है जो की अलग-अलग कलरफुल है और यहां पर उसके आस-पास में छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पे एक वॉल है जिसमें पूरा येलो कलर है हल्का क्रीमी टाइप का उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टार बना हुआ है जिसमे --

जिसके अंदर धागा दिखाई दे रहा है साइड में मशीन के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं सामने की ओर एक चेयर र --

यहां पर एक रूम बना हुआ है जिसमें पूरे में क्रीमी कलर के कर्टन्स लगे हुए है और सामने की तरफ काफी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए है।

कुल छे आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी उसमें से खड़ा है और एक लेडी बैठी हुई --

यहां पर सामने की ओर एक व्हाइट कलर का घर बना हुआ है जिसके सामने की ओर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और उसके पास में एक --

और साइड में थोड़ी-सी बड़ी बाउंड्री टाइप की दिखाई दे रही है जिसके साइड में छोटी-छोटी घांस लगी हुई है।

यहां पर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसके ऊपर छत के डिजाइन पर डिजाइन किया गया है यहां पे स्काई ब्लू कलर के बॉक्सेस बनाया गया है नीचे की ओर होटल --

रहने सा लिखा हुआ है और नीचे की ओर उसमें चैनल गेट बना हुआ है साइड में दो शटर बन बनी हुई है एक साइड की शटर खुली हुई है।